उस पर हरी घास लगी हुई है आसपास बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं पेड़ों का रंग हरा दिख रहा है।

आगे डलिया रखी हुई दिख रही है डलिया का रंग नीला और लाल दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर खूनी झील लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड का कलर हरा है।

सामने दीवार दिख रही है दीवार में एक झाड़ लगा हुआ है।

सामने कांच लगा हुआ है कांच पे लाइब्रेरी लिखा हुआ दिख रहा है।

एक पेड़ लगा हुआ दिख रहा है पेड़ों का रंग हरा दिख रहा है।

इसका कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है आगे हरी रंग की झाड़िया लगी हुई है।